पीछे बाउंड्री हो रही है।

डिब्बों में कपड़े रखे हैं।

कुर्ती है नेक्कर है डिब्बे रखे है।

एक साइकिल चला रहा है।

लोहे का बहुत बड़ा गाटर रखा है।

शैंपू के पैकेट टंग रहे हैं।

यहां जिम का सामान रखा है।

लाइट लग रही है एल_इ_डी लग रही है।

एक जगह शेरा वाली मां की एक तस्वीर रखी है।

एक आदमी का हाथ चमक रहा है।

पीछे रैक रखा है सफेद रंग हो रहा है।

वो आदमी चमक रहे हैं।

छह पर्दे लग रहे है मैट बिछ रहे है।

एक उसके परे आदमी बैठा है हरे पेड़ पौधे हैं बहुत बड़ा घर है।

बहुत सारे आदमी खेल देख रहे हैं।

सेप रखी है एक हवा भरने की मशीन रखी है।

एक ट्राली खड़ी है मुंजी है।

नीचे बहोत बड़ी पल्ली बिछ रही है।

एक औरत उन छेद रही है खंभे हैं लाइट है।

छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं। झोपडी बड़ी है झोपडी पे--

लाल रंग का पर्दा लग रहा है।

अटैची बैग की दुकान है।

बहुत सारी लुगाई बैठी है कुछ लौंडिया है।

बड़े कलश रखें है पर्दे से सज रहा है।

दो गाड़ी खड़ी है एक ही इको गाड़ी है एक स्विफ्ट गाड़ी है।

एक सफेद कपड़ो में आदमी खड़ा है।

एक रोड है गाड़ी खड़ी है।

खाली बॉटल रखी है प्लास्टिक का डिब्बा है।

बोड लग रहा हैं बोड में पलख लग रहा है।

एक आदमी है ऊपर गुब्बारे लग रहे हैं एक लौंडे के हाथ में फोन है।

एक आदमी खड़ा है एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है।

लोहे के खंभे हैं उन पे तार खींच रहे हैं बलफ हैं खंबे है।

दो आदमी सो रहे ये लोटे हैं।

पाइप रखा है गैस का सिलेंडर है।

डब्बी के छल्ले टंग रहे हैं।

और शैट है एक कप पर्दा टंग रहा है कूलर धारा है लकड़ी का गेट है।

लकड़ी के काउंटर बन रहे हैं।

अंदर एक काउंटर रखा है।

उसके बरब्बर में एक बहुत बड़ा लोहे का गेट है।

एक बहुत बड़ा घर का हॉल है।

बहुत बड़ा एक हॉल है बिम है यहां आदमी खड़े हैं।

गिटार है डिब्बे रखे है कुर्सी रखी है।

लाइट लग रही है डिब्बा रखा है।

दम काढ़ने की मशीन है भरे भूस है तीन बालक हैं।

रेस्टोरेंट में बैठे हैं।

कुर्सी रखे हैं बहुत सारी।

दो तीन आदमी बैठे हैं गिलास--